बिच में एक ईंटो की क़ियारी भी दिख रही है।

उसमें कुछ शेल्व बने हुए हैं जिसमें शील्डें कई प्रकार के इनाम --

आधी रखे हुए हैं और कुछ बड़ी सिनरियाँ भी लगी हुई हैं दीवार पर --

और उसमें पोर्च दिख रहा है सामने क्रीम कलर की बिल्डिंग है बिच में चॉकलेटी कलर का पट्टा पोल लगा हुआ है।

फेड और आजु बाजू उसमे लाल पटे लगे है।

बच्चो के अलग-अलग कलर के कपड़े हैं। बच्चे घांस के मैदान में बाहर बैठे हुए हैं। आसमान सफ़ेद दिख रहा है।

जिसमें बीच की टहलियाँ काली हैं और उसमे हरे-हरे पत्ते लगे हुए हैं और बड़ा सा एक काला पत्थर भी --